जैसे की आप देख रहे एक भारतीय स्टेट बैंक का बैनर लगा गया हैं स्टेट ऑफ इंडिया सामने एक गाड़ी हैं और एक स्कूटी हैं साइड में भी एक साइकिल हैं स्कूटी हैं।

और ऊपर में एक खम्बा हैं पोलक पोल का और उसमे लाइन तार बहोत पीछे साइड में गेट हैं बड़े से दो खिड़की हैं।

जैसे की आप देख रहे हैं एक मस्जिद हैं जिसमे एक एक बड़ा एक मस्जिद हैं छोटा मस्जिद हैं जिसमे बहोत सारे लोग आए हुए हैं और बहोत अच्छा मस्जिद रंग बिरंग--

तीन स्कूटी हैं चार-चार-चार मोटर साइकिल हैं।

देखी जैसे की आप देख रहे है यह एक कारखाना हैं एक गोदाम है इसमें एक और जिसमे--

जैसे की आप देख रहे हैं ये एक नई खेत का अभी-अभी अ खोदाई किया गया हैं जोकि बहुत बड़ा खेत हैं सामने एक पेड़ हैं।